उम बाहर की तरफ दो-चार अ बाइक है जो सा और स्कूटी पड़ी है जो शीशे में दिखाई दे रही है।

हा रोड है रोड जारि है और यहाँ पर साइड इसके अ इधर उधर जो है बोहोत सारे पेड़ पोधे लगे है किआरी बनी हुई है।

ये एक केक का सीन है और यहाँ पर अब ये केक है उसके उपर ये वाइट कलर का केक है और इसके उपर जो है रेड कलर के हार्ट बने हुए है।

पत्थर से भी रखे हुए है एक दो तिन चार पाच है छे सात पत्थर है और उपर की तरफ पुल जारा पुल बना हुआ है।

ये वंसल इवेंट का यहा पर एक पोस्टर लगा हुआ हैं और सामने कि तरफ यहा नंबर कुछ लिखे हुए हैं और स्क्रीन पे--

रेड कलर का है ऊपर के तरफ लाइटें है जो बंद पड़ी हैं इधर के तरफ एक लाइट जल रहीं हैं इधर की तरफ कैमरे भी रखें हैं और कुछ--

फूलो से सजा हुआ है और ये इधर की तरफ एक खीडकी है और हेलोजन भी लगा हुआ है।

और यहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ उसके बिल्डिंगे है और ये सरकारी बिल्डिंग है।

इसका गेट बनाया हुआ हैं सफेद और नील रंग का और यहा पे चार पाच बाइके खड़ी हुई हैं और यहा पोस्टर भी लगा हुआ हैं।

कुछ लेडिज है कुछ जेंट्स है जो बैग टांग कर खड़े हुए है और ये पहाड़ी इलाका है।

बाहर का सीन है और यहां पर बिल्डिंगे बनी हुई है तो वह कलरफुल हर एक कलरफुल है इसमें नीला लाल हरा कत्थई इस तरीके वाइट --

ऑरेंज तरह तरह के इसमें कलरफुल हैं और इसमें दो तीन आदमी औरत ब-अंदर की तरफ जा रहे हैं एक गेट के अंदर खड़ा हैं।

चक्कर कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें बनी हैं मूर्तियां भी बनी हुई हैं कुछ ऊपर पंखे भी लगे हैं दो तीन और सामने की तरफ लिखा हुआ भी है कुछ और यही सब चीजें हैं।

और ये शायद घर है और यहां पर ये ओपन किचन है और कुछ एक और वहां पे उधर सब बर्तन--

और डस्टबिन बी हैं और गेट पे कुछ लिखा हुआ हैं और यहाँ बहुत सारि बिल्डिंग और वो टेरेस पे टीसेट पडा हुआ हैं --

पर हां ऑफिस के लिए भी कुछ सामान रखे हुए है और ऊपर की तरफ बहोत सारी लाइटे --

यहां पर एक मिनी माल सा है और यहां पर प्लास्टिक का समान है टोटल सामान प्लास्टिक का है यहां और कुछ प्लेटें भी रखी है कांच की क्रोकरी का भी समान है यहां पर।

एक रूम है और इसमें जो है बहुत बड़ी मेज लगी हुई है चारों तरफ से और उस पे पांच छः छः सात कंप्यूटर रखे हैं उनके और उन्हीं के सामने एक एक चेयर रखी हुई है।

आके बना रखा है अ सिरिफ डाल रखी है और उसमें भी कुछ सामान रखा हुआ है और ऊपर सब लाइटे जल--

ये एक डॉक्टर कि दुकान हैं मेडिकल हैं शायद और यहा पर एक चेयर हैं गुमने वाली और यहा पर एक काउंटर बना हुआ हैं।

और अंदर की तरफ इसमे बहोत सारी इसमे सीसीए रखी हुई है काउंटर में और यहा पे रेक्स बनी हुई है।

और ऊपर कि तरफ लाइटे लगी हैं पर्पल कलर की बहुत सारी लड़की हैं आदमी हैं जो डांस कर रहे हैं और सबके अलग अलग पोस हैं यहा पे--

क्रेन का सीन हैं यहाँ पर और एक क्रेन जो हैं यहाँ पर हैं बहुत पीले कलर की क्रेन हैं यहाँ कुछ ट्रेक्टर खडे हैं ट्रॉली खडी हुई हैं --

ग्राउंड हैं बहुत बड़ा और यहाँ पे शाम का समय हो रहा हैं और यहाँ पे एक साईकल खड़ी हैं सामने कि तरफ और बच्चे कुछ बेठे हैं कुछ खेल रहे हैं।

बहेंगे लगे हुए है आदमी हेंगर को उठाके इधर उधर फिट कर रहा हे।

अ पीले कलर से हैं और यहाँ एक पेड़ पेड़ भी लगा हुआ है यहाँ और झंडे लगे हुए हैं यहाँ बहुत सारे यहाँ पे और यहाँ पर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा --

और एक यहाँ पर पेड हैं और पिछे के तरफ से बहुत सारे खेत लगे हुए हैं और वहा घर बना तीन शेड्स पडा हुआ हैं ब्लू कलर का यहाँ पे --

और यहां पर अ आसमान है जो और यहां सूरज सूरज चुभ रहा छुप रहा है यहां पे और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहां पे खेल रहे हैं।

यहा पर अ एक बहुत बड़ा अ इतो वो है यहा पर एक अ सड़क हैं बहुत बड़ी और यहा पर दो दो--

और भी सामान है यहाँ पर दो स्टूल भी रखे हुए है बेठने के लिए और यहाँ पर अ--

पर अ सात आठ टायर पड़े हुए हैं उसके ऊपर मट्टी पड़ी हुई है और ये सारा का सारा पूरा का पूरा खाली है और यहाँ पे अ जो पेड़ हैं वो भी उखेड़े हुए हैं।

यहां पर योगा सिखाई जा रही है यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक पहन के बैठे हुए हैं और यहां पे दो आदमी हैं जो घोड़ा बने हुए हैं उनके ऊपर दो--

दुकान है और यहा पर बहोत सारे शेम्पू बिस्किट रखे हुए है तेल रखे है और यहा पे--

यहां बहुत सारे तेल है बिस्किट है मैगी है और साबुन है सर्फ है माज़ा है और बहुत सारी चीज हैं पुरी की पूरी और ऊपर पंखे लगे हैं और लाइट भी लगी --

बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहां पर दो तीन नेट लगे हुए हैं और यहां पर सारा पूरा का पूरा खाली है और यहां चारों तरफ पहाड़ है और दिन छुप रहा है।

और इधर की तरफ भी नेट लगे हुए है और यहाँ बोहोत बड़े बड़े पेड़ पेड़ भी लगे हुए है।